सामने एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है नीला सफ़ेद आकाश दिख रहा है।

इस चित्र मे सुतली से बनी जाली दिख रही है।

इस चित्र मे एक तरफ़ हरी घास दिख रही है सामने काली सडक है।

हरी घास दिख रही है सामने गने हरे वृक्ष और आकाश दिख रहा है।

इस चित्र मे उचाई की तरफ एक तालाब दिख रहा है जिसमे पानी मे आकाश के रंग दिख रहे है।